पेन ग्लास से ढका हुआ भी नजर आ रहा है।

स्वी में एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ वायर्स भी दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति का हाथ में पेपर भी दिखा हुआ है।

उनके अंदर कई सारे खाने की चीज और घर का सामान लोग रखा हुआ है।

इस तस्वीर मुझे कान्हा और कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रहा है।

ये उपर भी फूलों का हार लगाया हुआ है।

ये लोग सीलिंग बना रहा है।

ये कपड़ा अलग अलग कलर में है।

तस्वीर पे दो व्यक्ति गाना गाते हुए नजर आ रहा है।

तस्वीर में मुझे एक बुद्धिस्ट टेंपल दिखाई दे रहा है।

स्टेज में कुछ महिलाएं डांस करने की कोशिश कर रहे हैं।

ये उन लोगों के पीछे फूल लोग भी लगाया हुआ है।

कोई झुक रहा है तो कोई खरा है।

एक स्ट्रीट लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

सामने रेड कलर का कुछ बैनर दिखाया हुआ है।

ऊपर लाइट भी जला हुआ है।

ब्लू कलर का साइन बोर्ड में भी कुछ लिखा हुआ है।

ये साइड में दो पॉलिथीन भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर पे मुझे तीन शॉप्स दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति गुब्बारे बेचते हुए भी दिखाई दे रहा है।

ब्रिज के नीचे बड़ा नदी भी दिखाई दे रहा है।

घर का कलर पिंक कलर है।

बीच में एक छोटा सा नदी बह रहा है।

नीचे भी ग्रास थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है।

ये दो ठो स्टेडियम भी नजर आ रहा है।

अंदर में बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहा है।

आसपास में पेड़ पौधा बहुत सारे नजर आ रहा है।

उस नदी में तीन लोग नहाते हुए भी नजर आ रहा है।